और इस मूर्ति के बगल में एक महिला का पोस्टर छपा हुआ है और इस महिला के पोस्टर में कई सारे नाम वगैरा भी लिखे हुए हैं।

यह एक खेत का चित्र दिखाई दे रहा है और इस खेत में कई सारी हरी हरी छोटी-छोटी घास वगैरह भी लगी हुई है।

और इस घर के अगल-बगल एक ग्राउंड बना हु- और इस ग्राउंड में कई बच्चे वगैरह खेल रहे हैं।

और ये औरत अपने हाथ में एक डंडा लाए हुए है और इस सड़क में कई सारी गाड़ियाँ व --